उसके ऊपर एक बत्तख बैठा हुआ है जोकि ग्रे कलर और पर्पल कलर में दिखाई पड़ रहा है| सामने पानी दिखाई पड़ रहा है| पानी का कलर ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा है| सामने कुछ पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं जोकि ग्रीन कलर में दि--

पिक्चर में कुछ सरिये से बना हुआ है जिस पर दो बॉय खड़े हुए हैं एक बॉय ऊपर खड़ा हुआ है एक बॉय नीचे खड़ा हुआ है।

मुझे एक कार भी दिखाई पड़ रही है| कार का कलर व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रहा है| सामने कुछ पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है| पेड़ का कलर ग्रीन कलर ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा है।